लेडीज साड़ी पहनी है और हाथ में एक ग्रीन कलर का प्लास्टिक है।

गाड़ी के पीछे गेट लगा है ऊपर में शीशा का खिड़की लगा हुआ है।

एक दुकान है यह दुकान पे यहां पे बहुत सारे मिक्सी है।

एक हॉल है और इस हॉल में बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं जोकि एक यहां पे स्पीकर लगा है।

यहां पे पार्क जैसा है और यहां पे ये घर टैल्स मारा हुआ है।

में फूल बहुत सारे फूल से सजाया है और यहां पे हल्दी लिखा हुआ है।

कई सारे यहां पे कुर्सियां लगे हैं और नीचे रेड कलर का जो है सो वो पर्दा मारा है और उधर ग्रीन कलर का पर्दा मारा है।

यहां पे बहुत सारा लाइट लगा है और व्हाइट कलर का पेंट किया है।

उसके एक तार है जो ब्लैक कलर का है और नीचे टेल्स मारा हुआ है।

पे तीन गाड़ी खड़ा है। एक गाड़ी पलसर है एक हौंडा है और एक डिस्कवर है।

बोर्ड लगा हुआ हैं अन्दर में और गेट खोल के जा रहा हैं अन्दर।

यहां पे बहुत सारा पेड़ है और आगे गेट है।

यहां पे दो बाइक है और एक स्कूटी है।

व हॉस्पिटल के आगे तीन व्यक्ति है हॉस्पिटल के अंदर दो व्यक्ति नजर आ रहे हैं जो गेट पे खड़ा है।

यहां पे कई सारे फूल का माला है जो कि चार जो है वो वाइट कलर है और तीन जो है रेड कलर है |

इक नहर है। नहर के पास एक ब्रिज जैसा रास्ता है।

एक होटल है। होटल के बाहर चार पहिये गाड़ी खड़ा है जोकि गाड़ी वाइट कलर है।

यहां पर बहुत सारा कुर्सी रखा हुआ है और बहुत सारे कुर्सी में बगल में उसका ब्लैक कलर का पेंट मारा है।

एक खजूर का पेड़ है और वह छोटे-छोटे बहुत सारा पेड़ है।

उधर खिड़की है जो कि उधर जाली लगा हुआ है।